और वहां पर काफी सारे लोग बैठे हुए हैं।

और वहां पर दो नों दीवारों पर सीनरी टांगी हुई है और लकड़ी के मेज है।

और लाइटिंग वगैरह लगा रखी है होटल के नीचे जो बना हुआ है वहां पर सामने सीढ़ियां बनी हुई हैं।

सामने एक नदी बनी हुई है।

सामने एक पाइप की दुकान है पाइप में अलग अलग तरीके के स्टैंड लगे हुए हैं।

और उन्होंने नीले रंग की पेंट और ब्लैक कलर की बनियान पहनी है।

और सामने बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

और ग्राउंड के अंदर बच्चे खेल रहे हैं।

जो कि जिस पर वाइट कलर का पेंट हो रखा है और एक सामने बोर्ड लगा हुआ है।

सामने एक ग्राउंड है ग्राउंड के ऊपर हरि हरि घास दिखाई दे रही है।

और एक नाव है जो की लकड़ी की है और वहां पर उसके अंदर दो तीन चार आदमी भी बैठे हुए हैं।